और दो-तीन आदमी दूर से दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ एक कपल खड़ा हुआ है जिसने एक औरत ने गले में माला हाथों में चूड़ी और भारी साड़ी पहन रखी है इस आदमी ने ब्ल्यू कलर --

देखने में एक फूल वाली मंडी लग रही है जिसमे काफी सारे कलरफुल फूल पड़े हुए है और बहुत सारे ऊपर की तरफ ऐसे प्लास्टिक के फूलो की सजावट की गई है और बहुत पिलर है।

देखने में काफी पुराना खंडर ऐसा दिखाई पड़ रहा है दो सामने की तरफ मंदिर ऐसे दिख रहे हैं।

और काफी सारे गू फूलदान रखे है जिनमें काफी सारे प पेड़-पौधे लगे हुए हैं एक खंभा दिखाई पड़ रहा है और आदमी सेल्फी लेते हुए --